बच्चे क्राफ्ट बना रहे हैं क्राफ्ट पेपरों का कलर पिंक येलो रेड व्हाइट है।

दो चेयर रखी है ब्राउन कलर की--

ग्रे ब्लैक व्हाइट येलो है वहां पर एक घर दिख रहा है उसमें--

ये एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान है इसमें वाइट रंग का काउंटर लगा है।